यहां पर एक बहुत बड़ी सी सड़क है और सड़क में एक बस खड़ी है और एक लड़का भी है और यहां पे बहुत सारा भीड़ भी है।

यहा पर बहुत बड़ा सा ग्राउड़ है ग्राउड़ बहुत सारे गिट्टी है और यहां पे बहुत सारे मिस्त्री भी है और यहा पे बास्केट की सीडी भि बनी हुई है।

यहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति है और मूर्ति मे यहाँ पर गोल्डन कलर का डिजाइन किया गया है और इसे बड़े अच्छे से सजाया गया है।

यहां पे एक बहुत बड़ा का ग्राउंड है और इसके नीचे बहुत सारे पेड़ और घास भी है और यहां पर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग भी है जो की पूरी व्हाइट कलर की हैं।